इस इमेज में मुझे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है उस पे लिखा हुआ है केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम।

इस इमेज मुझे एक रोड पर एक बस खड़ी हुई दिखाए दे रही है उसपे लिखा हुआ है नागपुर।

इस इमेज मे मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक दुकान के उपर उसके सामने बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

चलते चलते एक पेड़ दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहे है बहुत सारे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इमेज मे मुझे एक जीप दिखाई दे रही है और एक चक्का रखा हुआ दिखाई दे रहा और सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जो सामने जीप के सामने से खुली हुई है कुछ कर रहा है रेड कलर के ड्रेस पहने हुए है।